यहाँ एक पार्क है पार्क और यहाँ एक मेला लगा है।

यहाँ पर सब्जी की दुकोन है।

यहाँ पर अ दो लोग खडे हुए है --

यहाँ समुद्र है और समुद्र मे लिखा है।

यहाँ पर बहुत हि सारे विध्यार्थी बैठे हुए है एक ग्राउंड मे और नीचे चटाई भी है फर्स भी टांगे हुए है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग दिख रही है आसमान भी दिख रहा है।

और यहाँ पेड़ भी लगे हुए--